यहां पर बहोत सारी कुर्सियां पड़ी है जो कि इस वाइट कलर की है और पीछे जो कुर्सी है वह खाली है और आगे आगे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां बैठी हैं।

उसके नीचे बहोत सारे रूम है एक आदमी खड़ा है बीच मे पिलर है।

और यहां से एक मार्ग निकल रहा है मार्ग के दोनों साइड में--

इस रूम के अंदर एक पलंग है पलंग के ऊपर एक बेडशीट बिछी हुई है सामने टी_वी लगी हुई है।

आगे बहुत सारी लाइटें जली हुई है ये जो नौ है इसके ऊपर येलो कलर और ग्रीन कलर किया हुआ है और --

सामने बहुत ही बड़े बड़े पैकेट रखे हुए है लोहे के फर्नीचर के अंदर ये पैकेट सेट किए हुए है।

सामने देखे तो ऊपर ओर निचे कलर कलर के पैकेट ही पैकेट पड़े हैं इधर साइड वाले दिवार के पास ही बेड --

पीछे ग्राउंड में देखे तो दो टैक्सी खड़ी है येलो कलर की और टैक्सी के पीछे ग्राउंड में बहोत सारी विद्यार्थी खड़े है।

और पानी के पड़े हैं पीछे चाट लगे हुए हैं तस्वीरें लगी हुई है कुछ ठेलियां लगी हुई है।

बाहर एक डस्टबिन पड़ा है येलो कलर का और इस दरवाजे--

पीछे सायद येलो कलर का और कुछ--